दुकान पे बहोत सारी रंग बिरंगेया रंग की गाड़ी पार्क की हुई नजर आ रही है।

एरोप्लेन का रंग सफेद है।

रोड के बाजू में एक बड़ा सा गेट नजर आ रहा है।

मॉल का रंग सफेद है।

ऊपर दिए गए छवि के अनुसार छवि में एक बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है।

रास्ते की बाजू में एक तालाब दिख रहा है।

कुछ कुछ सुपारी पे नजर आ रहे हैं।

ऊपर दिए गए छवि के अनुसार ये एक रूम है।

छवि में बहोत सारी लाइटे जली हुई है।

छवि में डेकोरेशन गुलाबी रंग का किया गया है।

पर दिए गए छवि के अनुसार एक रस्ता दिखाई दे रही है।

छवि में एक बड़ा सा पीले रंग का गेट भी नजर आ रहा है।

बहुत सारे टी शर्ट सेल्फ में फोल्ड किए गए दिखाई दे रहे हैं।

छवि में एक आदमी पत्थर पकड़ते हुए नजर आ रहा है।

ऊपर दिए गए छवि एक पिकनिक स्पॉट है।

साथ साथ बहुत सारी स्कूटी और गाड़ियां पार्किंग की नजर आ रही है।

बहोत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।